यहाँ से लोग भारी मात्रा में कपडे को ले जाते हैं।

इंसान गाड़ी का इंतज़ार कर रहा है |

लोग ऐसे बड़े ही चाव से खाते हैंये आलू के पराठे बनते हैं।

यहाँ पे मुसलमान लोग अपने अल्लाह की --

ये इसमे लोग रहते हैं अपने परिवार के साथ में और --